और चारो तरफ से यहाँ पर पेड़ पौधे ही नज़र आ रहे हैं और लोग यहाँ पर आके वॉक करते हैं।